सीढ़ियों के ऊपर एक स्टेज बना हुआ है जहां पर जिन लोगों के हाथों में गिफ्ट है और सीढ़ियों के नीचे भी काफी सारे लोग दिखाई दे रहे हैं।

एक जैसी यूनिफॉर्म पहन कर यहाँ पर एक टीचर भी है जो कि राउंड लगाती हुई बच्चों को देख रही है।

यह एक स्टेट बैंक आफ इंडिया कर कर बोर्ड लगा हुआ है जिसके नीचे चार दुकानें हैं। उसमें से एक एक्सिस बैंक एक स्टेट बैंक और दो और दुकानें हैं।

नीचे काफी सारी बाईकें खड़ी हुई है और लोग आ जा रहे हैं रोड पर ऑटो बाइक साइकिल चलती हुई दिखाई दे रही हैं।

जो की एक क्लासिक डांस करते हुए दिख रही है दिखने में लग रहा है जैसे की ये कथक डांस कर रही है और इन्होंने एक क्लासिक साड़ी भी पहनी हुई है।

और बच्चे खड़े हुए हैं । टीचर्स उनकी टेबलों पर आ रही हैं ।

और बैठकर कुछ क्राफ्ट वर्क कर रही है जिसके टर्न लेते ही कुछ लड़के बैठे हुए हैं और वो भी ऐसा ही कुछ काम कर रहे हैं।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

बच्चों के पास कुछ सामान है और वो उसमें कुछ काम कर रहे हैं।

यह एक स्कूल है जहाँ पर काफी सारे बच्चे कॉरिडोर में दिखाई दे रहे है यहाँ एक टेबल लगी हुई है जिसके ऊपर रखे बच्चे कुछ क्राफ्टिंग वर्क कर रहे हैं और कुछ टीचर्स भी है जो इनके आस-पास घूमती हुई दिखाई दे रही हैं।

यह एक स्कूल की चार छात्राएँ खड़ी हुई हैं। चार बच्चियां खड़ी हुई हैं एक पोस्टर लेकर। उस पोस्टर में चार झोंपड़ियाँ बनी हुई हैं और एक बोहोत प्यारी सी पिक्चर है पेंटिंग है।

यह एक दुकान है दुकान के ऊपर न्यू ताज हेयर सलून लिखा हुआ है अंदर काफी सारे लोग दिखाई दे रहे हैं।

यहाँ एक बिल्डिंग या घर बनाया जा रहा है जिसमें जिसके लिए तीन मजदुर काम कर रहे हैं और कंट्रक्शन करी जा रही है।

यह एक मीटिंग रूम है जिसमें एक एम्प्लॉये अपनी प्रोजेक्ट दिखा रहे हैं स्क्रीन प्रजेन्ट करते हुए और बाकी लोग उनको पॉइन्ट आउट करते हुए दिख रहे है ।